अगल बगल में बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

टेबल के ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

ऊपर अल्बेस्टर स्टील का लगा हुआ है।

बगल में एक लोहे से बनी एक सीढ़ी भी है जिसका रंग काले रंग का है।

सामने की ओर रैकों में बहुत सारी साड़ियां रखी हुई हैं।

लकड़ी से बनी काउंटर भी रखा हुआ है।

दिवालो का रंग भी सादे रंग का है।

चर्च का नाम सेवंथ डे एड्वेंटिस्ट चर्च लिखा हुआ है।

चर्च के ऊपर एक लाइट भी लगा हुआ है।

चर्च का रंग लाल और सादे रंग का है।

यह एक सादे रंग की दीवाल दीवार है।

एक आदमी ठेला में सामान बेच रहा है।

ये सारे सामान लकड़ियों से बनी रेक पे रखा हुआ है।

इमारत पर बहुत सारी ब खिड़कियां भी हैं।

अगल बगल बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

सामने एक दुकान दिखाई पड़ रहा है जिसका नाम श्री द्वारका धीश वस्त्रालय लिखा हुआ है।

बहुत सारे लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं।

ऊपर सीलिंग सादे रंग की है जिसमे लाइट लगी हुई है।

एक लकड़ियों से बनी पुल भी नजर आ रही है।

बहोत सारी सजावटे की गई है।

सामने स्टेज पर बहुत सारे आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी माइक पे कुछ बोल रहा है।

यह एक जगह का चित्र है जहां बहुत सारी बस लगी हुई है।

दुकान के अंदर दीवार पीले रंग की है।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

पहाड़ के ऊपर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

इलेक्ट्रिक वाला खंबा भी है।